दुकान है बोर्ड पे लहासा वोलेन मेला लिखा है अंदर में स्वेटर लगा है।

लम्बा हरा पेड़ है ब्लू रंग का गेट है।